ये एक खुली जगह है जहां पे बहोत सारे हिरन है।

बॉडी पे व्हाइट व्हाइट डॉट्स है।

जोकी नीली शॉर्ट्स रेड टी_शर्ट और टाई और व्हाइट कलर का गज्जे सर पे बांधा हुआ है।

यह एक कपड़े की दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं बहुत सारे शेल्पो में और डिब्बे में भी कपड़े रखे गए हैं इसमें लाइट है टेबल है।

फैन भी है ओर एक ड्रॉर भी है जो की यहां पे पैंट शर्टस टी शर्टस सब दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट कलर का यहां पे टेबल है और--

और कंपाउंड के बाहर बहोत बड़े बड़े हरे भरे झाड़ हैं।

ये तस्वीर जिम में ली गई है जोकि एक आदमी--

और उसके पीछे एक लंबा सा खंबा है और एक सिल्वर कलर का कुंड भी दिख रहा है।

चमकदार चमकने भी चमक रही है और लाइन से और आड़े तेड़े से फत्थरो से दीवारें बनाई गई हैं।

और वाइट और ब्लैक में बॉक्सेस भी है खिड़की है जो कि डिज़ाइनेबल है और--

व्हाइट बहुत सारे स्कूटीयां हैं।

एक कार वॉशिंग पे जा रही है।

और एक टेबल है जिसमें टिशू पेपर दिखाई दे रहा है और एक टेबल है जिसमें फ्लावर पॉट रखे गए हैं एक मिरर भी है एक वॉच पीस भी है और एक ड्रॉ भी है।